साइड में काउंटर रखा हुआ है।

काउंटर के पास पौधा लगा हुआ है।

टेबल में एक सॉस ट्यूब और टिशू स्टेन रखा हुआ है।

ग्रास में ब्लैक कलर का टेन लगाया हुआ है।

मुझे यहां दो काले गाड़ी और एक सफेद गाड़ी दिखाई दे रही है।

वॉल में कुछ ड्राइंग बनाया हुआ है।

टेबल में कुछ फूल से सजाया हुआ सामान रखा हुआ है।

गुफा के नीचे लाल रंग के शर्ट पहना हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक आदमी फोटो खींच रहे है।

में छोटा सा रस्ता दिखाई दे रही है।

लड़कियां लोग कुछ हाथ में वाइट कलर का पकड़ा हुआ है।

उस पार में बहुत सारे लोग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में डेकोरेशन पीस लगाया हुआ है।

वाल के साइड में चार स्टैंड दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में दो आईने दिखाई दे रहे है।

में दो इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रही है।

केक के ऊपर में बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया गया है।

शिव भगवान की शरीर की कलर ब्ल्यू कलर में है।

एक बहुत बरा सा लोहा ब्रिज दिखाई दे रहे है।

लाल रंग का भी दिखाई दे रही है।

रिसेप्शन के कलर ब्राउन कलर में है।

सफेद कलर का एक बड़ा वाला पत्थर दिखाई दे रही है।

और मुझे यहां नीला आसमान दिखाई दे रही है।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

मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर के ग्रास दिखाई दे रहे है।

एक लाल कलर के मशीन में एशियन पेंट लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आसमान में सफेद कलर बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे पूजा करते हुए दिखाई दे रही है।

पीछे में भी बहुत सारे ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो का कलर ग्रीन कलर में हैं।

और का पत्ता दिखाई दे रही है।

रैक के ऊपर में दो तिरंगा दिखाई दे रही है।

एक वाइट कलर का क्रॉक्स दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर ये लोग पटाका फूटा रहे हैं।

वॉल में भगवान का फोटो लगाया हुआ है।

उस पार में तीन घड़ियां दिखाई दे रही है।

नीचे मे बहोत सारे कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

में ब्लैक कलर के वॉल में डेकोरेशन किया हुआ है।

एन प्लेट में ईको ऑफ अरुणाचल लिखा हुआ है।

मुझे यहां पर एक टायर की शॉप दिखाई दे रही है।

बहोत जोर से बारिश हो रही है।

टायर के सामने एक लाल रंग का पोस खड़ा हुआ है।

बाल के कलर वाइट कलर में रंगा हुआ है।

मुझे बहोत सारा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

टेबल में एक प्रिंटर रखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बलूंस दिखाई दे रहे हैं।